ईं तस्वीर का अनुसार हमे सामने एक लाल रंगा की इमारत दिखेण लगीं।

ईं तस्वीर का अनुसार हमे यखा लोगों की लैन दिखेण लगीं और यूं का सामने हमे कुछ शटर दिखेण लग्यां जोकि आधा बंद होयां ये शटर पर जु छ लाल रंग करयुं।